यहॉँ पे हमें पंखा दिखाई दे रहा है दीवार है जिसमें बहुत सारे पेंटिंग्स लगे हुए हैं और बगल मे चेयर है और टेबल रखी हुई हैं बहुत सारी।

और कुछ-कुछ किताब में फ़ोटोज रखे हुए हैं वो--

और बगल मे एक बोर्ड चिपका हुआ है पीले रंग का जिसमे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है। दिवालो को सफेद रंग से पेंट किया गया है।

पाउल लिखा हुआ है याउस पिज्जा लिखा हुआ है तार दिखाई दे रहा है लाइट लगी हुई है उनके ऊपर बादल दिखाई रहा है।